आसमान दिखाई दे रहा है घर दिखाई दे रहा है।

सर ने साफा बांधा हैं और उसके पीछे बोहोत सारे --

लोग खड़े हुए हैं पीछे अ चर्च है।

पेड़ दिखाई दे रहे हैं डिस टी.वी. लगी दिखाई दे रही है आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में अब्बे लम्बी - लम्बी बिल्डिंग दो दिखाई दे रही हैं बाहर --

एक आदमी अपना मुँह और ढ़ाका हुआ है। रुमाल से बाल्टी रखी हुई है।